जिसमें एक बहुत बड़ी आंख बनी हुई है बाहर की तरफ मुझे कुछ स्टॉले भी दिखाई दे रही है जिसपे कुछ खाने की सामग्री लटकी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें मिक्सी प्रेस कुकर --

जिनके ऊपर ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ है ताकि ऊपर से हम ज्वेलरी को देख सके।

यहां पे बहुत सारे क्यु_आर कोड भी दिखाई दे रहे है।

कांचों का कलर ब्लू कलर का है जिसमें आसमान का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है।

नजारा काफी शांत है और शाम का माहौल है।

पीछे की दीवार पर हरे और वाइट कलर का पेंट है जिसपे डिज़ाइन के लिए दो तितलियां भी बनाई है एक नीली और एक बैंगनी।

यहां पर और भी व्यक्ति है जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी दवाइयां रखी है।

पीछे की तरफ मुझे कुछ छोटी और बड़ी अलमारी दिख रही हैं।

फोटो में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

ताकि यहां पर लोग बैठ सके और लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था है।